सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवार का रंग लाल कलर का है।

जो कपड़ों की दुकान है पीछे डब्बों में कुछ कपड़े रखे हुए हैं और जो रेडी है उसके ऊपर कुछ ड्रेसेस लटकी हुई हैं।

सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो इधर-उधर घूम रहे हैं कुछ बाइक खड़ी हुई हैं और पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।